गाय को रस्सी से बांध के रखा है।

यहां बहुत सारे पहाड़ हैं।

सामने एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है।

मशीन के आगे बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है।

बोरियो के सामने चार लोग खड़े हैं और ट्रैक्टर के साथ भी चार लोग हैं।

घर के ऊपर एक स्टार कलर का लाइट लगा हुआ है।

घर में और भी बहोत सारा लाइट लग रखा है।

जिम है जिनके ऊपर सफेद टिन लगी है।

दुकान के अंदर एक इंसान खड़ा है।

नदी के सामने बहुत सारा कूड़ा फैल रखा है।

रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना है।

पिकनिक एरिया से एक रिवर होते जा रही है।

झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

दुकान के सामने एक बैंग टंगा है।

घर के सामने एक बाइक खड़ी है और बहुत सारे गुलदस्ते भी हैं।

बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड लगा है जीसके ऊपर हीरो और ओयई एन मोटर्स लिखा है।

बिल्डिंग में तीन शटर हैं।

बस के उपर स्लीपर कोच और कोलवार लिखा है।

और रिवर के ऊपर धूप पड़ रही है।

दुकान के सामने एक रेलिंग लगी है जिसके ऊपर बहोत सारा सामान लटका है।